उस बिल्डिंग में बहुत सी खिड़कियां बनी हुई है ।

बहोत से बाइक पार्क किए हुए हैं एक फोर व्हीलर भी लगी हुई है।

इस दिखाई दे रही है जिसपे बॉक्स ऑफिस लिखी हुई है।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

बहोत सारे व्यक्ति जिम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक चित्र में एक पार्किंग एरिया दिखाई दे रही है।

चित्र में एक लेडी दिखाई दे रही है।

टेबल के ऊपर टिशू पेपर रखी हुई है।

एक बड़ी सी स्मार्ट लिख कर लोगो बनी हुई है।

इस चित्र में एक चर्च के बाहर की दृश्य दिखाई गई है।

इसके बाहर सी_यू_बी ए_टी_एम लिखकर बड़े से बैनर लगी हुई है।

दो व्यक्ति खड़े दिख रहे हैं जो कि वाइट कलर की शर्ट पहने हुए हैं।

तरफ घास से बहोत सुन्दर गार्डनिंग की हुई है।

बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।